तस्वीर मे हम देख सकते है यहा पर हमे गुफा दिखाई दे रही है गुफा के अंदर हमे कुछ लोग आते दिखाई दे रहे है यहा पर मे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके हात मे मोबाईले दिखाई दे रहा है घड़ी दिखाई दे रही है काले बाल दिखाई दे रहे है।

यहा पर हमे माइक लगे दिखाई दे रहे है यहा पर हमे खिड़किया दिखाई दे रही खिड़कियों पर हमे कुछ परदे दिखाई दे रहे है खिड़कियों पे हमे बाहर से धुप की रोशनी आते दिखाई दे रही है यहा पे हमे पंखे दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें स्टार भी दिखाई दे रहा।

एक बच्छा खड़ा दिखाई दे रहा दो बच्छे बैठे दिखाई दे रहे एक बच्छे ने मास्क लगा रखा है एक महिला दिखाई दे रही जो की कॉफी पीते दिखाई दे रही है कप दिखाई दे रहा है जो की सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है यहा पे बहुत सारी किताबे दिखाई दे रही है अलग-अलग प्र--

यहा पर हमे काँच दिखाई दे रहे यहा पर हमे काँच के दरवाजे दिखाई दे रहे यहा पर हमे एक बोर्ड दिखाई दे रहा जिसके ऊपर आइडिया दिखाई दे रहा यहा पर हमे बाहर कुछ गमले दिखाई दे रहे।

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर बड़ा समन्दर दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें बहुत सारा बादल दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें अलग-अलग मन्दिर दिखाई दे रहे है मूर्तिया दिखाई दे रही है।

तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमे प्रोजेक्टर चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे एक लड़का एक लड़की दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमे आसपास इनके झाड और पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमे पीछे --

तस्वीर मे हम देख सकते है यहा पर शादी के स्टेज दिखाई दे रहे है यहा पर बहुत सारे कूर्सिया लगे हुए दिखाई दे रहे है कूर्सियो का रंग हमे सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर मे हम दे सकते है यहा पर हमे कुछ कार खड़े दिखाई दे रहे है कारों का रंग हमे लाल काली सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है यहा पर हमे ट्रेंट दिखाई दे रहे है यहा पर ऑटो रिकशा वाले दिखाई दे रहे है यहा पर कुछ लोग --